ये बस से सटी हुई फूटपाथ है और बस पे कुछ लोग चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बस के नीचे भी कुछ लोग है और कुछ महिलाये फूटपाथ पे कड़ी हुई नजर आ रही है| फूटपाथ के बगल में एक बड़ा-सा वृक्ष नजर आ रहा है।

ये किसी स्कूल का स्टेज फंक्शन चल रहा है| यहाँ पे बच्चों को एक लाइन से हाथो में कुछ देके बिठाया गया है| एक चेयर एक कतार में बच्चे बैठे हुए हैं पीछे कुछ अभिभावक भी बच्चे के पीछे खड़े होके फोटो खिचवा रहे हैं।

बुक स्टाल है बुक स्टाल में दिवाली की पूजा करता हुआ ये व्यक्ति नजर आ रहा है| इसने गणेश जी लक्ष्मी जी और सरस्वती माता की बड़ी-सी बड़ी फोटो लगा कर फुल-माला पहनाये पूजा कर रहा है।

यह एक स्कूल सा बड़ा-सा ईमारत नजर आ रहा है| यह ईमारत का गेट है इसमें एक बुरखा पहनी हुई औरत गेट गोद में बच्चे लिए हुए अ--